और कही ठो कलर में है जैसे की पीला हो गया सफ़ेद हो गया हरा रंग का भी है और इसमें डिज़ाइन बोलते है वो भी बहुत सुंदर दिख रही है।

पानी पटा रही है बहुत सुंदर जैसे दिख रहे है यहाँ पर पेड़ -पौधा है नजारा अच्छा है बहुत सुंदर है हरा -भरा हैं ।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर भी है बंगला मस्त दिख रहा है वो भी--

केला फल है। सेव है संतरा है बहुत सारा फल है और यहाँ पर क्रेट में भी है। क्रेट मे भी दिखाई दे रहा है।

बंगला जैसे लग रहा है और नीला-नीला लाइटिंग आ रहा है उधर मस्त दिखाई दे रहा है ।

क्योंकि यहाँ पर दो मिस्त्री लोग खड़े है एक पकड़ा है पाइप को पानी पटा रहा हैं वैसे लग रहा है और बहुत सारा बिम्ब है यहाँ पर बिम्ब ढलाई हो रहा है लगता है कि यहाँ पर कुछ नया घर बनाया जा रहा है और वैसा हो सकता है एक मिस्त्री तो टोपी पहना हुआ है।